सुबह के टाइम जाने से कितनी अच्छी-अच्छी सब्जियां मिलती है।

जैसा की आप देख रहे हैं की यह एक स्टेज है इसमें --

काफी अच्छे लगेंगे क्योंकि सामने गार्डन है। गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स हैं।

बाकि पुराने स्कूल भी लग रहे हैं दिखने में।

ये माहौल बहोत अच्छे लगते है देखने में काफी लोग जाते है इतने सुबह-सुबह माहौल देखने के लिए।

माहोल बहुत अच्छा खुशनुमा बना हुआ है।

सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं।

कई तरह के मछली रखे हुए है।

मछलियों का सब दाम भाव बता कर मछली बेच रहा है।

चलते रहेगे आप लोगों को रास्ता का मालूम नहीं चलेगा।

ने भूल-भुलैया में सिर्फ एक पंखा दिख रहा है।

इतना सुन्दर ये घर है इतने बरे घर में से एक आदमी --